और रोड है और लोग कितने जा रहे है मार्केटिंग करने के लिए।

और यहाँ पे लड्डू भी चढ़ाए गए है और यहाँ पे अगरबत्तियाँ भी हैं और --

और रेड साइकिल येलो साइकिल और ब्लैक साइकिल और कितने सारे साइकिले यहाँ पर पड़े हुए हैं।

और समान रखने का जगह भी है और बस कितना सुंदर लग रहा है देखने में।

ये एक सब्जी मार्केट है जहाँ पे पतगोभी है और फूलगोभी है आलू है बैंगन है ।

और बहुत ही समान है मूली भी है और पे एक --

जो की देखना में बहुत सुंदर लग रहा है।

आलू है पालक है और गाजर है बैंगन है बहुत सारी चीज जो दिखने में सुंदर लग रहा है लोग यहाँ से खरीद के ले के जा रहे हैं मार्केट बहुत ही अच्छा है।

और लाल रंग का पर्दा है और यहाँ पे बोड हुआ है जहाँ पे एक लड़का भी है।

यह यह एक सब्जी मंडी है और ये एक टमाटर है।

और व्हाइट रंग का कुछ लगा हुआ है|

और यहाँ के फूल भी बहुत सुंदर दिखाए दे रहे --